यहाँ पे लोग फूल तोड़कर इकट्ठा कर रहें हैं यह गार्डन देखकर बहोत ही वातावरण अच्छा लग रहा हैं यहां के फूल भी अच्छे--

से निकले हुए बच्चे यहां पर बैठते हैं और यहां का वातावरण काफी अच्छा है।

टाइप दिख रहा है झरना काफी सुंदर लग रहा है पेड़ पौधे भी काफी सुंदर नजर आ रहे हैं।

यहां एक पिंजरे पर दो तोते एक साथ पिंजरे में बंदे हैं यहां पर दोनों तोता एक दूसरे को अच्छी तरह से देख रहे हैं।

यह ड्राइंग प्रतियोगिता चल--

यह एक पॉजिटिव हेल्थ जोन है।

एक गार्डन है।

और वे निकालने की कोशिश कर रहे हैं।